बड़ा ग्राउंड नजर आ रहा है जिसके पास एक काफी बड़ी बिल्डिंग है एंड इस ग्राउंड में काफी सारी टेबल एंड बेंच बिठी हुई हैं ।

काफी बड़ी एक टावर दिखाई दे रही है जिस पर काफी सारी तारे बिछी हुई हैं।

उसमे काफी सारे पिलर लगे हुए है यह ब्रिज एक नदी को पार करने के लिए --

उनकी यहाँ पर मूर्ति बनाई गई है जो की एक --

माटी से बनी हुई है इस इमेज में एक लेडीज खड़ी हुई है जिसके --

टावर नजर आ रहा है जिसके पास काफी सारे पेड़ --

इस इमेज में हमें एक काफी बड़ा हॉल नजर आ रहा है इस पर सामने एक काफी बड़ी एल_इ_डी लगी हुई हैं ।

एंड ऊपर छत पर काफी सारी लाइटे लगी हुई है एंड यहाँ पर काफी सारे व्यक्ति --